ये दोनों ने टी शर्ट पहने हुए हैं।

उसके सामने में साउंड बॉक्स भी एक रखा गया है।

ऊपर में पंखे लटके हुए हैं।

रिसेप्शन के सामने बैलूंस भी लगा के है।

और तीन सीट खाली दिखाई दे रहे ऊपर में पंखे दो ठो है।

इसमें बाइक सात ठो रखे हैं।

गजरा पहनते हुए नजर आ रहे हैं।

जिसमें पानी के साथ खेलते हुए नजर आ रहे है।

जिसमें चेयर लोग एक के ऊपर एक रख के ब्लू कलर से है।

उसके पीछे में बहुत सारे सामान है जिसमें ऑयल दिखाई दे रहे हैं।

ने कपड़े ब्लू कलर का पहना हुआ है।

और बैंक के ऊपर एरोप्लेन उड़ रहे हैं।

उसके अगल बगल में कंस्ट्रक्शन को दिखाया गया है।

जिसमें अपने अपने प्रोजेक्ट को पकड़ते हुए बैठे हैं।

और दूसरे व्यक्ति अपने पेपर को चिपका रहे हैं।

ऊपर में छोटा छोटा वाइट कलर का लाइट दिखाई दे रहे है।

यहां में टेम्पल को दिखाया गया है।

एक आदमी ने पिंक कलर का टी शर्ट पहना है।

दूसरे व्यक्ति ट्रेन से उतर रहे हैं।

और फ्लावर पॉट में ग्रास लगा के हैं।

यहा एगलू सिस्टर सेंट्रल जेल दिखाई दे रहे हैं बिल्डि --

साइड में गो गोल ग्रास दो ठो है।

दो तीन आदमी चल रहे है।

यहां में बहुत सारे आदमी बैठते हुए नजर आ रहे हैं।

यहां छत को दिखाया जाता है।

और दो बुड्ढा खड़े होके देख रहे हैं।

झील के पीछे में दो घर दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर में आदमी लोग को दिखाया गया है।

इन लोगों के आगे में माइक स्टैंड भी है।

यहां में गुमसार डाइनिंग का दुकान दिखाई दे रहा है।

और बाहर में स्टैंड पंखा भी रखे है।

यहां में क्वाई शॉप बिल्डिंग को दिखाया गया है।

यह दुकान कपड़ा का दिखाई दे रहे हैं।

इसमें आंटी थोड़े से बाहर में बैग के खड़ा है।